पार्क के चारो साईड से पेड़-पौधे हैं। सुन्दर है अच्छा दिख रहा है।

ये गोभी का परांठा है जो प्लेट में रखा हुआ है। तीन परांठे हैं बहुत अच्छे लग रहें हैं। यह आलू के परांठे भी हो सकते हैं टेबल के ऊपर थाली में रखा हुआ है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं।